बैंक के गेट की दीवार के ऊपर एक बड़ा सा पीले रंग का पोस्टर लगा हुआ है।

और दुकान के अंदर तीन सफेद रंग के बल्ब जले हुए हैं।

बड़ा सा पुराना सा पत्थर का किला बना हुआ है।

उस किले ए में ए हल्का गोल्डन रंग का कलर पुता हुआ हे ।

उस व्यक्ति ने सफ़ेद रंग के कपडे पहने है और सर पर सफ़ेद टोपी पहनी है |

मकान का बड़ा सा गेट बना हुआ है उस गेट पर लाल रंग का पेंट पुता हुआ है |

फिर लोग खड़े हुए हैं बहोत सारा मकान बनाने का सामान पड़ा हुआ है।

और एक घर सा बना है। सड़क के आइट साइक हरी भरी सी घासें और कुछ पेड़-पौधे लगे हैं।

एक बड़ा सा पुराना सा पत्थर का किला बना हुआ है।

उस किले की छत पर एक बड़ी सी डोरी टंगी हुई है।